और कुछ घांस रोड के किनारे-किनारे दिख रहे हैं यहां बहोत सारे पेड़ दिख रहा है पेड़ के ऊपर कुछ पत्तियां दिख रही है।

यहां एक पेड़ के ऊपर नारियल रखा हुआ है दिख रहा है यहां पर तार दिख रहा है आसमान दिख रहे हैं।

यहां पे एक स्कूल का दृश्य दिख रहा है स्कूल के अंदर कुछ बेंच रखे हुए दिख रहे हैं।

और यहां पे एक एक महिला है दुकान के अंदर और एक बच्चा दिख रहा है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है कुर्सी नीले रंग का है।

मॉल के अंदर बहुत सारे हैंगर दिख रहे हैं जिसके अंदर कुछ पैंट दिख रहे हैं जो काले रंग के है और कुछ बेल्ट लगा हुआ है यहां पे बहुत सारे जैकेट रखे हुए दिख रहे हैं।

और एक व्यक्ति और दिख रहा है जिसके सर पर लाल रंग का गमछा है यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान का दृश्य दिख रहा है जिसके पर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिसमें सैमसंग लिखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे महिला का दृश्य दिख रहा है यहां पर महिला के गले में कुछ मंगलसूत्र है यहां पे कुछ अगरबत्ती दिख रहे हैं यहां पे अनानास दिख रहे हैं ।

यहां पे एक घर का दृश्य दिख रहा है।

घर के अंदर बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं आदमी ने जैकेट पहना हुआ है पीले रंग का।

दीवार पे ऊपर लाइट जल रहा है यहां पे कुछ बैलून दिख रहे हैं जो नीले रंग के हैं और कुछ पिक कलर के हैं।

और दीवार पे तीन चार लाइट जल रहे हैं यहां एक टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर एक माउस रखा हुआ है एक नोटबुक रखा हुआ है।

विग के ऊपर बहुत सारे बाल लगे हुए है जो काले रंग के हैं।

यहां पे बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं कुछ बाइक दिख रहा है।

यहां पे एक लैपटॉप दिख रहा है बगल में एक माउस है।

एक बोतल रखा हुआ है यहां बहोत सारे गमले में पौधे लगे हुए दिख रहे हैं आसमान ऊपर में बादल दिख रहा है।

ऊपर में तीन चार लाइट जल रहे हैं यहां पे नीचे बच्चों का कपड़ा दिख रहा है और कुछ टी_शर्ट रखे हैं।

बेड के ऊपर एक गद्दा बिछाया हुआ है जिसपे एक पेज चिपकाया हुआ है जिसपे महिला का चित्र बना हुआ है।

उसके ऊपर लाल कलर का पेंट किया हुआ हैं पीछे में कुछ घास दिख रहे हैं और कुछ पौधे दिख रहे हैं।

शोरूम के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे एम_आर_एफ लिखा हुआ है नीचे में तीन चार आदमी दिख रहे हैं एक आदमी फोन से बात कर रहा है यहां पे एक आदमी का सर दिख रहा है।

कुछ तौलने का मशीन रखा हुआ है और हल्का अंधेरा दिख रहा है यहां पे एक पेपर नीचे रखा हुआ है।

दरवाजे के ऊपर एक फ्लावर लगा हुआ हैं और कुछ तार ऊपर लगे हुए हैं।

पीछे में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं पेड़ के ऊपर कुछ कपड़े लगे हुए हैं यहां कुछ बांस के दंटे चिपकाए हुए हैं।

यहां पे एक बिल्डिंग का दृश्य दिख रहा है बिल्डिंग लाल रंग के हैं यहां पे बहुत सारे खिड़कियां दिख रही हैं।

घर के अंदर चार पांच पुतले रखे हुए हैं आदमी का।